एक बुद्ध का मंदिर है जिसमें कि पाँच मूर्तिया रखे हुए है एक बड़ा है तीन छोटे साइज़ की मूर्तियां हैं तीन हरा कलर कि मूर्तिया है दो व्हाइट कलर के --

लाल कलर जैसे की लग रहा है तेरह-चौदा फिट अ से ही ज्यादा -- के कुर्सी पर वो बैठा है जीन्स और शर्ट पहना हुआ है।

बीच में सैमसंग गैलेक्सी का केयर पड़ा हुआ है।

एक तस्वीर है जिसमे की एक शहर का पिक्चर दिखा रहा है जिसमे की पानी घुस गया है शहर मे और दो गाड़ी है जो की पानी मे चल रहा है एक आदमी जा रहा है जो की --